ये एक ऑफिस हैगा और यहाँ पर कुछ लोग काम करते हैंगे और यहाँ पर एक टेबल रखी हुई हैगी।

और चारों ओर यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों में जो डांस देख रहे हैं ये सभी लड़कियों ने साड़ी पहन रखी हेगी और बहुत अच्छी डांस कर रही हेगी।

यहां पर पत्ता गोभी भी रखे हुए है काफी सारे केले रखे हुए हैं कुछ केले रस्सी के जरिए ऊपर टंगे हुए हेंगे एक आदमी बेच रहा है।